नहीं और यहाँ पर अपनी मन्नतें माँगते हैं और यहाँ लोग घूमने भी आते --

यहाँ पर लोग आते है तथा पूजा पाठ करते है अप मन्नते भी मांगते है यहाँ पर लोग गर्लफ्रेंड के साथ घूमने भी आते है यहाँ पर यह मन्दिर में कई लोग की शादी भी कि गई है।

यहाँ पर धुँआ निकलता हैयह एक का प्लांट है।

यहाँ पर गाँव ज्यादातर गाँव के लोग में आते हैं क्योंकि यह मंदिर गाँव में बना है।

यह सब मटर बैगन आलू मिर्ची भिंडी करेला गोभी--